ये बहा एक लड़का अपनी तस्वीर ले रहा है इसेक सामने--

और ये जो है शायद गैस वाले मीटर है।

ये भी कंस्ट्रकशन साइड का फोटो है यहाँ पर काफी ट्रक भी खड़े हुए है।

आस पास काफी हरियाली है इसके और यहां पर--

एक व्यक्ति बैठा हुआ है अपनी तस्वीर खिचवा रहा है इसने ग्रीन कलर की मोजड़ी पहनी हुई है।

और लाइट ब्लू कलर की शर्ट पहनी है इसके पीछे काफी कलर फूल दिवार है।

और इसने गोल्डन कलर का ब्रेसलेट पहन रखा है एक हाथ में और एक हाथ में वाच पहन रखी है।

ये गैया है और ये शायद गैया ने एक छोटा सा बछड़ा दिया है।

और गाय ने तो अपना पिछवाड़ा दिखा रखा है वो नहीं कह रही वो कह रही मै नहीं देखती हटो यहाँ से नासपीटे ये क्यों मेरा फोटो खींच रहा है।

इसमें जो आदमी कार रिपेयर कर रहा है ना वो कार की डिकी के ऊपर चढ़ कर ही रिपेयर कर रहा है।

बोर्ड लगा है उसके ऊपर लिखा है डार्क ब्लू कलर से नेक्सा --

कॉन्सेलटेंट उसके ऊपर एक प्लेन का फोटो बना हुआ है।

और ये गोल्डन कलर की दिवार है एक दिवार पे सामने कई सारे--

ये एक ऑटो है ये एक दरवाजा है यहाँ पर एक पेड़ है ये बोहोत घना पेड़ है।

उसी के पास जो दुसरा लड़का है वो मोबाइल चला रहा है और उसके पास एक लाल कलर का--

और इस ग्राउंड के अंदर व्हाइट लाइनें बनाई है जिसमें बच्चे अलग अलग अपनी लाइन मे चल सके।

और बस यहाँ पर हरयाली ही हरयाली हैं और सुबह का फोटो हैं ये क्योंकि धूप --

ये कोई जगह पे बहोत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं इसे मेला ही--

और यहाँ पर एक पेड़ भी लगा हुआ है और ग्राम भी मंडप--

यहाँ पर बोहोत छोटे छोटे पोधोको पन्नी में लगा कर एक जमीन पे रख रखा है।

और ये सामने तालाब दिख रहा है सामने--

शायद अंदर किसी की शादी हो रही होगी और यहाँ आस पास पर्दे डले हुए हैं।

और ऊपर पी_ओ_पी ही साईड में भी पी_ओ_पी और पी_ओ_पी के ऊपर व्हाईट लायटिंग लगी हुई बीच बीच में जो कि बहुत ही दिलकश लग रही है।

और नीचे लोहे के एंगल लगे हुए हैं उसमें वेल्डिंग का--

और यहाँ पे एक व्हाइट कलर की टंकी रखी है बाहर एक्टिवा खड़ी है लड़का एक स्टाइल में खड़ा हुआ है शॉप के अंदर बोहोत सारा सामान रखा हुआ ह--

शर्मा हे और डॉक्टर दिनेश शर्मा हैं।

और अः अः कम्पलीट हेल्थ केयर यहाँ पर मिल जाती है आपको--